केंट का और यहाँ पे केंट का मशीन भी रखा हुआ है जहाँ पर हम नल खोल के पानी पी सकते हैं और अंदर में भी मशीन है।

ये एक हाईवे है हाईवे में हम देख रहे हैं कि एक बस खरा है एक छोटा सा गारी भी है और एक यहा छोटा सा चांद चाय का दुकान भी है।

बड़ा ही मिल रहे हैं और यहाँ भी चारों तरफ काड़ी ही काड़ी ही है।

ये एक घर का गार्डन है जहां छोटा-छोटा पौधा लगा हुआ है गमला है बहुत सारा और गमला में छोटा-छोटा पौधा लगा है बड़ा-बड़ा भी पौधा है।

अ यहां आपन एरिया है यहां पे एक छत सी भी बना हुआ है।

ये एक बैंक है एस_बी_आई बैंक है यहां पे तीन गाय एक दो तीन चार ठो गाड़ी खड़ी है एक कार खड़ी है।

ये एक राशन की दुकान है भंडार है इसका नाम है भंडार यहां पर चावल चूड़ा ये सब राशन टोटल मिलते हैं आप एक आ--

तो नई एक छोटा झूला लगा हुआ है बालकोनी से हम देख रहे चारो तरफ घर ही घर दिखाई दे--

ये एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर लरका लरकी लोग बाहर बैठ के कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे सब --

ये एक शॉप है जनरल स्टोर शॉप है यहां पे पहले समान मिलते दुल्हन वगैरह के और यहां पे किराना का छोटा दुकान भी है सा।

और यहां पे दो व्यक्ति दिखे हमें जो कि आपस में बात कर रहे हैं।

ये एक घर है घर के बाहर एक गार्डन है जो कि पूरा पेड़ से भरा हुआ है नीचे में छोटा-छोटा घास है बरा बरा पेड़ पौधा भी है।

ये एक तालाब है यहाँ पे चारों तरफ सीधी बनी हुई है चारों तरफ हरे भरे घरे घर है हरा भरा पेर है --

घर भी है यहाँ पे कुछ व्यक्ति देख रहे हैं हम सीरी के पास खड़े हैं अनद्दी को ते देख रहे तालाब को और कुछ व्यक्ति घूम रहे हैं।

ये एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे कुरकुरे चिप्स मैगी ये सब हमें देख रहे हैं टॉफी भी है।